यह एक समुन्द्र है यह समुन्द्र बहुत ही बडा वा गेहरा है।

इस मंदिर में रोजाना बहुत से लोग पूजा और आरती करने के लिए आते है और यहाँ पर दीप प्रज्वलित करते है।

और यहाँ पर बहुत सारे लोग इन पुस्तकों को पढ़ने के लिए आते है।

यह एक नदी है यह नदी बहुत ही बड़ी वा गहरी है इस नदी मे एक बोट चल रही है।

यहाँ पर एक नदी है इस नदी में एक नाव चल रही है नदी के किनारे पर एक घर बना हुआ है।